इस पिक्चर में मुझे घर दिखाई दे रहा है।

ये भी रखा गया है।

अंदर में लाइट भी जला हुआ है।

बाहर में घर भी देख रहा है।

छे में एक अच्छी ओ पेड़ लोग भी दिख रहा है।

पानी के ऊपर में हैंगिंग ब्रिज भी बनाया हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक ग्रीन कलर का डस्टबिन देखने को मिला है।

टेबल के ऊपर में फूल देखने को मिल रहा है।

यहां में बहुत ज्यादा लोग योगा भी कर रहा।

बादल भी देखने को मिल रहा है।

इमें साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है।

बाहर मे एक लड़का भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

येलो बस के पीछे में भी रेड कलर की बस नजर आ रहा है।

बस के सामने में लड़का भी खड़ा हुआ देखने को मिला है।

ऑटो भी जाते हुए नजर आ रहा है।

दुकान के अंदर में चेयर भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे टीना का घर दिखाई दे रहा है।